बहोत सारी फल रखे हुए हैं।

घूम के अपने दुकान को चेक करता हुआ--

जो की बहोत ही सुंदर नजर आ रही है।

जहां की बेंच बहोत ही सुंदर दिख रही है।